इसमे पंखे लगे हुए है फिर टेबल लगा हुआ है टेबल का कलर ग्रीन है यहाँ पे बहुत सारा चेयर लगा हुआ है।

फोटो एक ऑटो मोबाईल का सोरूम का है इसके ऊपर लिखा हुआ है फस्ट चॉइस बगल मे --

यहाँ पर दो माउस रखी हुई है और यहाँ पर गैस बुझाने वाली जैसे समान रखी हुई है जैसे अव फिर वहाँ पे पंखा लगा --

मेला की है जहां हरि हर क्षेत्र सोनपुर मेला दु हजार उन्नीस प्रणाम।